एक बाल्टी है जो सफ़ेद कलर की है मछली का कलर ब्लैक है।

ये एक फंक्शन के अंदर का फोटो है इधर एक ए.सी. दिख रहा है वाइट कलर की वॉल दिख रही हैलाइट दिख रही है और रेड बलूनो से डेकोरशन दिख रही है एक लड़का खड़ा हैजिसने येलो केप --

वाइट टी शर्ट एंड ब्लू जीन्स पेहनी रखी है नीचे भी कुछ बलून्स गिरे हुए है।